एक फैक्ट्री के पीछे का चित्र लिया गया है।

यह चित्र एक प्राचीन मंदिर का चित्र है |

कुछ लोग वो मुंह से बजाने वाला बाजा --

यह चित्र एक रोड से लिया हुआ है।

जो कि सरकारी हॉस्पिटल जैसा लग रहा है।